हरे रंग का एक डस्टबिन भी रखा हुआ है पीछे की तरफ कुछ हरे हरे पेड़ भी हैं।

एक व्यक्ति नीचे खड़ा है उसने हाफ टीशर्ट और लाल रंग का कच्छा पेहना है दूसरी तरफ एक व्यक्ति सफेद हाफ बनियान में है।

यहां पर बहोत बड़ा खाली रोड है बहोत सारे थ्री व्हीलर यहां पर खड़े हुए पीछे की तरफ हरे हरे--

इसने शॉल ओढ़ा हुआ है और स्वेटर पहन रखा है।

उसी साइड लोहे के पाइप भी लगे हुए हैं।